और बहोत सारे झंडे दिखाई दे रहे हैं जो हल्के पिंक कलर के हैं और लाल कलर के हैं।

और कुछ बैनर दिखाई दे रहे हैं जो पीले कलर के हैं जिसमें लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है और एक बाइक दिखाई दे रहा है।

यहां पे मुझे एक बड़ा सा स्टैचू दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और कुछ पथरे दिखाई दे रही है जो ग्रे कलर की है।

इसमें कुछ छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं और एक पक्षी दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है।

और दो पंखे दिखाई दे रहे हैं जो सफेद कलर के हैं और बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं और खड़े हैं।

यहाँ पे मुझे एक आधा ऑटो दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और पीले कलर का है और काले कलर का है।

यहाँ मुझे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का है और कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो चल रहे हैं।

यहाँ पर मुझे दो दुकानें दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे मिठाइयाँ रखी हुई है जो सफेद कलर की है और लाल कलर की है।

यहां पर मुझे कुछ घरे दिखाई दे रही है जो सफेद कलर की है और ग्रे कलर की है।

और कुछ बिचालिया दिखाई दे रही है जो हरे कलर की है और येलो कलर की है।

और कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जिसमें नमकीने और चॉकलेट्स रखी हुई है जो लाल कलर के है और कुछ बैनर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है जो काले कलर का टी शर्ट पेहना हुआ है और ग्रे कलर का पैंट पेहना हुआ है और उसके हाथ में एक ग्लव्स दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है और कुछ आगे दिखाई दे रही है जो पीले कलर की है और मिट्टी कलर की है और पिंक कलर की है।

अ बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है जो लाल कलर की है और पीले कलर की है और एक बांस दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।

और राउंड शेव में टेबल रखे हुए हैं जो पिंक कलर के हैं और सफेद कलर के हैं।

यहां पर मुझे कुछ अलमारी जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

और एक भगवान का फोटो दिखाई दे रहा है और कुछ पाइपें दिखाई दे रही है जो सफेद कलर की है।

और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।